खिड़कियों के अंदर से मुझे एक काले कलर की सफेद कलर की जाली नजर आ रही है नीचे की तरफ एक पुलिस लाइन में नजर आ रहा है।

सामने की तरफ कुछ लड़के बैठे नजर आ रहे है कुछ लड़के वीडियो बना रहे है और कुछ लड़के देख रहे है सामने की तरफ मुझे एक कैमरा भी नजर आ रहा है जो की उनकी तरफ फोटो घिचता हुआ नजर आ रहा है।

एक लड़की नजर आ रही है लड़की लाइट से कुछ काम करती हुई नजर आ रही है।

अंकल नज़र आ रहे है जिनने ब्लेजर पेहना है उनके पास में एक आंटी नज़र आ रही है जिनने साड़ी पहेनी हुई है उनके पीछे मुझे एक दुल्हन सी नज़र आ रही है जिनने काफी सुंदर साड़ी पहेनी हुई है उनके पीछे मुझे कुछ फूल से नज़र आ रहे हैं जो कि डेकोरेट किया गया है।